इस इमेज में एक गार्डन है जिसमे गार्डन में एक लड़की पाइप से पानी दे रही है पेड़-पौधों में --

इस पिक्चर में बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है वो स्कूल या कॉलेज हो सकता है और ऐं उसके सामने कुछ बसें खड़ी हैं और मम्म मैदान है।

इस पिक्चर में कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। पेड़-पौधों के आगे ग्राउंड हैं जिसमे कारे रखी हुई हैं।

इस पिक्चर में एक बाउंड्री दिख रही है।